इस तस्वीर में मुझे मंदिर देखने को मिला है।

साइड में गच्छी और पेड़ लोग भी उगा हुआ है।

दो कस्टमर भी आया हुआ नजर आ रहा है।

ब्लू कलर के बाइक भी दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर के पर्दा भी दिख रहा है।

बायसाइकिल के सामने में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

बाहर में फूल लोग भी लगा हुआ है।

ग्रीन कलर के डोरमेट भी बिछाया हुआ है।

वहां में बहोत सारा इंसान लोग आया हुआ है।

पानी के किनार में बड़ा सा पहाड़ भी देखने को मिला है।

इस तस्वीर में मुझे ग्राउंड देखने को मिला है।

इस तस्वीर में मुझे जंगल देखने को मिला है।

एक आदमी ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

घर के ऊपर में ब्ल्यू कलर के सिंटेक्स भी रखा हुआ देखने को मिला है।

बाहर मे बाइक भी पार्किंग करके नजर आ रहा है।

व्हाइट कलर का पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

एक बच्चा भी डिखाई डे रहा है।